जिसमें ढलाई का काम चल रहा है बहोत सारे--

बहुत सारे चट्टान हैं एक सफेद रंग की कार भी खड़ी है।

बहुत सारे बच्चे बैठ के ड्राइंग बना रहे है एक मैडम है जो कि सफेद रंग का कपड़ा पहनी हुई हैं बच्चों को समझा रही है।

इस तस्वीर में जो फोटो है ये एक्स स्कूल की है जो कि एक केंद्रीय विद्यालय है गवर्नमेंट स्कूल है।

इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक बिल्डिंग की है जिसमें काम चल रहा है सीमेंट रखा है रेती है गिट्टी है।

इस तस्वीर में जो फोटो है किसी कैंटीन या कैफे की है।

इस तस्वीर में जो फोटो ये किसी--

इधर बहोत सारे चावल की बोरियां गेहूं की बोरियां रखी हुई है।

बहुत सारे सफेद रंग के लाइटें लगी हुई है पंखे लगे है।

एक रिमोट रखा है टी_वी का एक काले रंग की टी_वी भी लगी है एक सोफा है जिसके ऊपर काले रंग का बैग रखा हुआ है एक टॉवेल रखा है हरे रंग का।

तस्वीर में जो फोटो है यह एक शॉप की है।

क्योंकि ये मेडिकल शॉप जैसा लगता है एक भूरे रंग का टेबल है दो तीन ठो क्यू_आर कोड स्कैनर रखे हुए हैं।

और दिन का नजारा है पानी बहुत ही शांत है सुंदर है साफ है एक दम जो बह रहा है।

और सफेद रंग का गद्दा बिछा हुआ है।

इस तस्वीर में जो फोटो हैं इसमें स्टेज है स्टेज में लाल रंग का मैट बिछा हुआ है।

एक सफेद रंग का टेबल है जिसमें पेन रखा है एक कैंची रखा हुआ है।

आस पास बहोत बड़ा रास्ता है जाने का सीमेंटेड है।